एक तरफ से लेंटर को डाल रहे हैं और प्लेन कर रहे हैं उसको।

और बाकी ढो रहे होंगे बजरी और सीमेंट शायद।

एक पटरी जा रही है ट्रेन की और यह पूल डाला हुआ है साइड पे इसके।

रात को भी यह जगह काफी सुंदर लगती है।

इसमें भी कुछ हि कलर्स पे फोकस किया गया--

ई ये कोई पहाड़ी एरिया है।

और ये वैसे गैराज तो लग नहीं रहा है गाड़ी ठीक करने का। शायद गाड़ी खराब हुई हो।

और इसमें व्हाइट कलर को काफी हाईलाइट किया गया है।

जहां काफी सारे लोग हैं जो परछाई में नजर आ रहे हैं यहां पे।

तो ये मुझे साउथ की जगह लग रही है जहां पे वहां के लोग आए हैं।

इसमें दो लोग जो हैं वो कॉफी पी रहे हैं।

और शीशे में नजर आ रहा है एक व्यक्ति फोटो ले रहा--

तो इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई गई है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है।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

शायद ये की किसी सब्जी के विक्रेता की दुकान है या तो कोई लेके आया है थोक में सब्जियां।

गुलाब और कइयों के तो मुझे नाम भी पता नहीं है।

तो इस फोटो में दिखाया गया है बैंक एस-बी-आई का।

ये भी एक पहाड़ी एरिया लगता है देखने से--

अब मुझे लग रहा है कि शायद यह पहाड़ी क्षेत्र का जिम हो क्योंकि यहां पर लड़कियां कम होती हैं जिम के लिए क्योंकि अलाओ नहीं करते हैं।